चित्र में मुझे बिजली के खंभे दिख रहे हैं चित्र में मुझे वायर दिख रहा है।

चित्र में एक लोग मुझे बैठा हुआ दिख रहा है और काम कर रहे हैं।

चित्र में मुझे कुछ बोर्ड लगे हुए दिख रहे हैं।

चित्र में शॉप का ऊपर नाम बाबा रोड लाइंस लिखा हुआ है।

चित्र में मुझे कैलकुलेटर दिख रहा हैं।

चित्र में मुझे कुछ मशीनें दिख रही है।

चित्र में एक छोटा सा गुड्डा और डायरी रखी दिख रही है।

चित्र में मुझे कुंड में भरा पानी--